कुछ लोग खड़े हुए हैं पेड़ दिख रहे हैं।

ये एक स्कूल का--

एक कारपेट ग्रीन पड़ा है।

ये एक गार्डन है जहां बाहर सड़क दिख रही है।

सामने एक गेट बना हुआ है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है।

ये एक डबल बेडरूम का रूम है जिसमें डबल दो सिंगल सिंगल बेड पड़े हुए हैं।

यह स सामने मुझे समुंदर दिख रहा है।

छोटे-बड़े मिट्टी के पत्थर पड़े हैं।

यह एक मंदिर दिख रहा है मुझे।

उसमें बीच में एक स्टेज बना हुआ है।

कुछ लोग नीचे बैठे हुए हैं।

यह एक सफेद काली एक बड़ी बिल्डिंग है।

नीला पानी है उसमें बच्चे खेल रहे हैं दो लड़के सामने खड़े हुए हैं ऊपर सीढ़ियां हैं।

सामने बहुत सारी पटरियां हैं।

ये एक बड़ा ग्राउंड है।

अलग अलग टाइप के गमले हैं छोटे हैं बड़े हैं कलरफुल हैं कुछ झाड़ियां हैं एक ब्राउन कलर का डंडा है।

यह एक किरयाने की छोटी सी दुकान है।

एक टेबल पर बर्नियां पड़ी हैं।

में बिस्किट कॉफी चाय --

पीछे कुछ टीचर खड़े हुए हैं ।

उसके पीछे बड़े पेड़ हैं।

स्टेशन पे कोई नहीं है।

ये एक शादी का हॉल है।

टेबिल है उस पे गिलास रखे हुए हैं।

बहुत सारे बच्चे मैराथन दौड़ दौड़ रहे हैं।

कुछ बच्चों के हाथ में चप्पल है।

सब दीवार पे लगी हुई है।

बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

एक टेबल पे बहुत सारी मछलियां पड़ी हैं ।

एक सरदार जी बैठे हुए हैं।